और ए_सी भी लगा हुआ है।

ऊंची ऊंची पहाड़ दिखाई दे रहे है।

उनके हाथ में एक बड़ी सी चाबी है।

टंगी हुई नजर आ रही हैं।